इस इमेज में आपको सामने की तरफ कुछ स्टील की चेयर लगी हुई दिख रही है सामने एक कैश काउंटर टाइप का है।

उन्ही के पास मे कुछ लोग घूम रहे हैं और पानी की भी झरने टाइप कुछ जा रहे हैं निकल के यहां से और उन्ही के पास में काफी बड़े-बड़े पेड़स हैं और काफी लंबे एरिया तक ये एरिया सोफ हो रहा है।

साइड में आपको एक टोप लगी उसी के पास में आपको वाइट कलर की आलिशान एक बिल्डिंग तरह से दिख रही होगी जो बड़ी रॉयल्टी क दर्शा--

इस इमेज मे आपको सामने की तरफ काफी सारे प्लांट्स और काफी सारे ट्रीज और काफी बड़ा एरिया दिख रहा होगा जहां पे --

जो की एक अच्छे और बहुत आलीशान वे में आपको रॉयलिटी को दर्शा सकते हैं उन्ही के नीचे आप रेड कारपेट देख सकते हैं और ये क्लॉथस किसी राजा महाराजाओ से रिलेटेड लग रहें हैं।

इस इमेज मे एक हाफ बोल जो भी अन्डर कॉन्सट्रकटेड है या फिर हाउस का एरिया है।

आप देख सकते हैं की कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे वुड का वर्क हो रहा है और इसमे पिंक कलर का ब्लू कलर टी-शर्ट पहने लोग बैठे हुए --

इस इमेज मे एक रैसिंग ट्रैक हमे दिखाई दे रहा है जहां पे तीन लड़के दौड़ रहे है।

इसमें आपको एक डाइनिंग टेबल दिखाया जा रहा है यहाँ पे एक्सैक्ट्ली उसे देख सकते हैं सामने आपके सामने एक टेबल है उसपे एक प्लेट रखी है उसी के ऊपर एक बाउल है उसमें तीन फ्लेवर्स की --

परमानेंट पे और अच्छे तरह से मेन्टेन किए गए हैं और काफी अच्छे वे में इन्हे शेडूल करके लगाया गया है एक ही सेम रैग में।

इस इमेज आप सामाने की तरफ देख सकते है की काफी सारे एरिया है जो की अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है जो सेपरेट बंदा वर्क कर सके इस हिसाब से बनाये गए है।

ओर आप चाहे तो बैक साइड मे उसे देख सकते है कि एक ट्रक जिसकी विन्डो अभी ओपन है वो वहा पर खड़ा है जो कि रिफुएल हो रहा है ।

इस इमेज में आपको सामने की तरफ क एक फ्रूट शॉप दिख रही है कुछ टैंपू वगैरह खड़े हैं कुछ कार्स पार्क हैं।